यहाँ पे नया मकान बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं बालू है गिट्टी है सीमेंट है। ये इसमें पथर लगा हुआ है। मचान बना हुआ है। बोर्ड भी लगा हुआ है। पेड़-पोधा दिखाई दे रहा है। आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ पे कॉलेज जैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा है कॉलेज ।